taxonomy पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे taxonomy और taxonomy को जोडना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उबंटु लिनक्स operating system drupal 8 औरfirefox web browser का उपयोग कर रही you आप अपने पसंद का कोई भी web browser उपयोग कर सकते हैं
अपनी website खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है
हमारे पास हमारे सभी बने हुए content types और fields हैं हमें categorization को जोडने की जरूरत है और यहाँ taxonomy आता है
taxonomy कुछ नहीं है लेकिन categories है
अपने imdb उदाहरण पर जाते हैं याद करें कि हमारे पास imdb साइड में movie genre field है
यहाँ drupals की taxonomy में कार्य करने का तरीका है
movie genre vocabulary हो सकता है और यह मुख्य category के लिए term है
और उस vocabulary में हमारे पास terms है
अत: screen पर action adventure comedy drama और romance है
और फिर comedy के नीचे romantic action slapstick और screwball है
हम drupal vocabulary या taxonomy में असीमित nested categories या terms कर सकते हैं
अब यहाँ एक बात है जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण है
एक tag जहाँ कई sites विफल होती हैं वह है उनके कंटेंट को categorize करने के लिए builtin tagging widget या tag vocabulary का उपयोग करना
हालांकि यह categories को जल्दी जोडने के लिए सक्षम है इसमें कुछ निहित समस्याएँ है
क्या होगा जब कोई typo types करेगा
अत: energy – e n e r g y e n r e g y के समान नहीं है और drupal को इसका अंतर पता नहीं है
अत: अचानक हमारे पास 2 categories हैं और कंटेंट अब जुडा हुआ नहीं है
इसलिए हम हमेशा closed taxonomy की सलाह देते हैं जैसे कि screen पर है
यह set करने में आसान है और हम इस श्रृंखला में इसे बाद में करेंगे
अभी के लिए समझते हैं कि taxonomy का कई तरीकों से उपयोग किया जा सकता है
हमने पहले ही देखा है कि यह कैसे content की सूची को बनाता है लेकिन हम सभी प्रकार के views को filter और sort करने के लिए taxonomy का उपयोग भी कर सकते हैं यदि हम इसका सही उपयोग करें
अब taxonomy को देखते हैं
हम अपने events content type के लिए taxonomy set करेंगे
structure पर click करें नीचे scroll करें और taxonomy पर click करें
आपको शायद याद होगा कि हमने सभी के साथ tags setting किया है
लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है हमें closed taxonomy चाहिए कुछ जो कि हम नियंत्रित कर सकते हैं और कुछ जिन terms को आसानी से नहीं जोडा जा सकता है
अत: हम add vocabulary पर click करेंगे और इसे event topics name देंगे
description में हम type करेंगेthis is where we track the topics for drupal events
save पर click करें add term अपने vocabulary में terms जोड सकते हैं add a term पर click करें
screen पर आप terms की सूची देख सकते हैं जिन्हें हम जोडेंगे introduction to drupal site building
module development theming और performance
उनको जोडें – introduction to drupal और save पर click करें
और यह फिर से हमें add screen पर ले आता है
अब मैं site building type करूँगी और save पर click करें
module development और save click करें इसी तरह theming मैं केवल enter दबा रही हूँ और यह स्वत: ही सेव हो रहा है
और अब and में performance और save click करें
हम यहाँ complex vocabulary जोड सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम इसे सरल रखेंगे
यहाँ taxonomy पर क्लिक करें और event topics में terms का सूचीकरण करें
हमारे पास introduction module development performance site building और theming है
और वे वर्णमाला के क्रम में है
लेकिन मैं उन्हें कठिन क्रम में व्यवस्थित करना चाहती हूँ
अत: मैं module development को नीचे और site building को ऊपर कर रही हूँ
और मैं theming को site building के बाद रखूँगी और फिर performance को and में
इन पर click करें और drag करें अपने बदलावों को हमेशा सेव करें
अन्यथा आपके screen छोडने के बाद drupal उन्हें याद नहीं रखेगा
अत: save पर click करें और यहाँ हमारे terms हैं जिस क्रम में हम चाहते हैं
हमने taxonomy जोड दिया है लेकिन हमारे content type को इसके बारे में अभी भी पता नहीं है
अत: आगे बढे और structure content types पर click करें
और अपने fields और events content type को manage करें फिर add field पर click करें
field type को selecting करना इस case में vocabulary में taxonomy term के लिए reference है
अत: taxonomy term को चुनें और इसको event topics name दें save and continue पर click करें
और अब यह हमें type of item to reference के बारे में पूछेगा
चूंकि वह हमने पहले ही चुना है यहाँ सावधान रहें हम इसे unlimited में बदलेंगे क्योंकि एक event का एक से अधिक topic हो सकता है
save field settings पर click करें
और यहाँ नीचे हमें सुनिश्चित करना है कि क्या हमने सही reference type चुना
event topics को चुनते हैं यहाँ यह हमें create references entities if they dont already exist की अनुमति देता है
इसे inline entity reference कहते हैं असल में इसका मतलब है कि यदि वहाँ topic था जो कि हमारी सूची में नहीं था तो कोई भी यूजर इसे जोड सकता है
हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा करे अत: इसलिए हम इसे अनचैक ही छोड देंगे
save settings पर click करें
कंटेंट को जोडने से पहले यहाँ एक और step है
हमको अपने url patterns को set करने की आवश्यकता है और add तौर पर कंटेंट जोडने से पहले हमें ऐसा करना चाहिए
यह सुनिश्चित करता है कि कंटेंट जिसे human जोडा है अनुकूलित url है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
संक्षेप में
इस tutorial में हमने taxonomy adding a taxonomy को जोडना सीखा
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial projectnmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद